टेबल दिखाई दे रही है जिसपे दो प्लेटें रखी हुई हैं।

लोहे की चीज पड़ी हुई दिखाई दे रही है जो कि बहुत सारी है।

और यहाँ पर धूप भी दिखाई दे रही है धूप में झालियों की परछाएं भी दिखाई दे रही है और यह दिन का टाइम हो रहा है।

और इसमे एक भईया बैठे हुए हैं।

और एक बाइक भी खड़ी हुई है जिसके काँच दिखाई दे रहे हैं ।

जो कि रानी कलर की साड़ी पहनी है एक डममी और एक डमी --

जिसमें बहुत सारे लड़के खड़े हुए है।

जो कि काले कपड़े पहने हुए हैं ।

और पीछे काले परदे डले हुए हैं ।

एक रेलिंग पर तीन गमले रखे हुए हैं उनमें पेड़ लगे हुए हैं ।

सामने एक रोड़ दिया गया है जो कि सुनसान पड़ा हुआ है ।

यहां पर बहुत सारी बसे खड़ी हुई है।

और बस टॉप के उस साइड बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और यहाँ कुछ आदमी नमाज पढ़ रहे हैं ।

बाहर एक मैदान पड़े हुए हैं ।

और यहाँ बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क करी गई हैं ।

जिस पर एक काली टंकी रखी हुई है ।

काँच से बनी हुई है फिरोजी कलर की दीवारें पुती हुई हैं ।

जिसमें घास सूख रही है ।

और जगह सुनसान पड़ी हुई है।

यहाँ पर हर तरह के फूल पेड़ टंगे हुए हैं ।

कुछ पेड़ लगे हुए हैं सामने--

जो अंकल की गोद में बैठा हुआ है ।

एक लड़का वाइट शर्ट पहने हुए हैं और एक चेक्स वाली शर्ट पहने हुए हैं ।

जिसमें एक रूम बना हुआ है।